और बड़े बड़े पेड़ ह दिख थे।

ए हा फोटो मा एक बहोत बड़े से पहाड़ दिखथे पूरे पहाड़ ही पहाड़ दिखथे।

यह फोटो मा एक बहोत बड़े रेस्टोरेंट ओखर--

यहां फोटो का एक बहोत बड़े हॉल हरे जेम बहुत सारे टाइल्स लगी से नीचे जमीन बा--

और कांच की खिड़कि ह लगी से बहुत बड़े में।

इस चित्र वह एक बहोत बड़े से सरोवर हरे--

और एक ठन रोड ह दिखत हे ओ पार बिल्डिंग हरे बिल्डिंग के ओ पार म बड़े से बिजली के तार ह दिखत हे।